और आसमान भी बहोत ही प्यारा सा--

आप इस पिक्चर में देख सकते है यहां पर बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है।

और साथ में हरियाली सी दिख रहीं हैं।

जिसने यहां पर आग जलाई है।

आप इस पिक्चर में एक बेड को देख रहे हैं।

पर और खुला आसमान के नीचे एक --

आप इस पिक्चर में देख सकते हैं।

इस पिक्चर में आप देख सकते हैं यहां पर एक बिल्डिंग में दिखाई दे रही है।

इस पिक्चर में आप देख सकते हैं यहां पर--